यहां एक महिला खड़ी होकर कुछ बोल रही है।

यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां एक कुर्सी रखी हुई है।

रैक पर कुछ कप रखे हुए हैं।

यहां के दीवार पर छोटे छोटे फोटो लगे हुए हैं।

यहां एक झरना लगाया गया है।

रास्ता का रंग ब्र भूरा है।

यहां बहुत सारे बिल्डिंगस हैं।

यहां ब पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

वह आदमी नाव चल रहा है।

यह एक सोफा रखा हुआ है जिसका रंग लाल है।

यहां की खिड़कियों में शीशा लगा हुआ है।

यहां एक बिजली का पोल है जिसमें कुछ तार भी है।

यहां बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहा बहोत सारी मछलियां रखी हुई है।

यहां लाल रंग की बहुत सारी बलून है।

यहां बहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

यहां एक लाल रंग का है।

इस लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई है।

यहां काले रंग की गेट लगे हुए हैं।

यह एक मेन गेट का दृश्य है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है।

यह आदमी हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है।

यहां की दुकान का रंग लाल है।